इस चर्च पे बहुत से लोग आया करते हैं प्रेयर करने के लिए।

ये फार्महाउस पे बहुत से लोग आया करते है फार्महाउस का पुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है इस पुल का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ है।

इस किले के चारों तरफ का नजारा काफी सुंदर है ये किला शाम के टाइम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगता है ये किला बहुत ही फेमस किला है।

इस हॉल में बहोत सारे प्रोग्राम्स होते हैं।